यहां घर में एक बैठने के लिए बेंच जैसा कुछ रखा हुआ है।

इस तस्वीर में हमे एक मस्जिद के अन्दर की तस्वीर दिख रही है।